पौधे लगे हैं यहां पर चार दिवारी की गई है।

मोटरसाइकिल का पोस्टर लगा है हीरो होंडा का।

पार्क बना हुआ है बसें खड़ी हुईं है लोग हैं यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई है।

वर्क विश फॉर वर्क इनका का बोर्ड लगा है स्विच लगे हैं बिजली के।

यहां पर किताबों की दुकान है।

यहां पर पार्क बना हुआ है।

झूले लगे हुए हैं घास लगी हुई है। शेर की मूर्ति बनी हुई।

फोटो क्लिक कर रही है। हाथ में फोन लिए हुए हैं। गुब्बारे लगे हुए हैं मोटरसाइकिल पर लड़का खड़ा हुआ है।

लोग खड़े हुए हैं यहां पर लाइटें लगी हुई हैं।

बिजली के तारें लगी हैं खंभा लगा हुआ हैं आदमी खड़ा हुआ हैं कार खड़ी है।

यहां पर भगवान की मूर्तियां रखी हुई है।